ये भीम यू.पी.आई. का स्कैनर है इसमें सभी बैंको का --

ये बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है बहुत ही अच्छा बस स्टैंड है रात का समय है और बस का जो नाम है सवेरा ये बड़ा-बड़ा बस है ए.सी. बस है।

ये रिक्शा नया रिक्शा है जो पन्नी पैक है पूरी तरह से और देखने में बहुत ही और अच्छा बहुत ही सुंदर लग रहा है और शीशा भी लगा हुआ है गेट भी लगा हुआ है जो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है।

जो बहुत सारे पिलर दिया हुआ है कुर्सी बन गया है और पिलर खड़ा हो रहा है और इस पिलर जो है ये बहुत सारा पिलर है बहुत सारे रूम बनेंगे इसमें और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे काम शुरू है बिल्डिंग बनने का और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो ये जगह बहुत ही अच्छा सुंदर देखने में लगेगा ।